एक एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ में एक सर्किट लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक गमला लगा हुआ है सामने रोड बनी हुई है ऊपर एक तार दिखाई दे रहा है और एक --

एक घर है जो टीन सेट का बना हुआ है बड़ा एक पॉट रखा हुआ है रास्ता दिखाई दे रहा है लकड़ी में कुछ --